पीछे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो की हरे रंग के हैं।

एक व्यक्ति ने सफेद रंग का शर्ट पेहन रखा है।

एक बहुत बड़ा सा नीले रंग का डी_जी है जिससे कुछ तार लगी हुई है।

सामने की तरफ रास्ता बना हुआ है जहां ऊपर बहुत सारी लाइटे हैं जोकि लगी हुई।

पीछे काफी सारे पेड़ पौधे भी हैं बड़े बड़े से।